यहाँ पे एक काँच दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ बैनर्स दिखाई दे रहे है एक महिला दिख रही है चेयर्स दिखाई दे रही है पानी बोतल दिखाई दे रही है टेबल दिखाई दे रही है और बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है बहुत सारे डम्बलस दिखाई दे रहे है येलो --

लाइट्स दिखाई दे रही हैं काच दिखाई दे रहा हैं निचे पिंक और पर्पल कलर दिखाई दे रहा हैं और बहुत सारे--

असमान में पर्पल ब्लू ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है हैग्रे कलर सिलेटी कलर दिखाई दे रहा है और भी बहुत सारा कलर दिखाई दे रहा है।

कलर दिखाई दे रहा हैं ब्राउन कलर दिखाई दे रहा हैं ग्रे कलर दिखाई दे रहा हैं ग्रीन कलर दिखाई दे रहा हैं. यहां पर बहुत सारा कलर आसमान में ब्लू कलर दिखाई दे रहा हैं हल्का सा पिंक कलर दिखाई दे रहा हैं बाहर सारे पेड़ दिखा--